सामने एक रूम दिखाई दे रहा है येआप ये लगता है कि हॉस्पिटल का --

यहां पर कोई तो दिखाई नहीं दे रहा पर यहां पर मशीन रखी हुई है।

ऊपर साइड में दुकान के ऊपर साइड में एक घर है।

यहां पर यहां पर तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा पर यहां पर बहुत सार आ --

ओ जनरल स्टोर का समान रखा हुआ है जमाजा--

यहां पर औरतें बच्चे और आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यह लोग शायद नमाज पढ़ने आए हैं यहां पे मस्जिद का कलर व्हाइट और ग्रीन कलर है आधा--

ये शायद ब्रिज है यहां पर ये ब्रिज से यहां पर ये इसकी फोटो ली गई है यहाँ --

और थोड़ी बहुत दुकानें भी दिखाई दे रही है यहां पर--

ट्रेड मिल वाली मशीने रखी गई है एक आदमी जो कि --

यहां पर और भी नीचे मशीनें दिखाई दे रही हैं।

एक ने ब्लैक कलर की टी_शर्ट पहनी एक ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यहां पर उसकी टेबल रखी हुई है टेबल और चेय--

यहां पर और इधर साइड में नेट लगे हुए हैं जो कि ग्रीन ग्रीन कल --

र वाले ने भी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है हल्की ब्लू --

सामने एक हवा पंचर की दुकान दिखाई दे री --

उधर सामने साइड ये डिग्गी क्या पता क्या है इधर सामने झूले लगे हुए --

सामने केनरा बैंक दिखाई दे रहा है जहां पर--

इधर साइड में शायद ए_टी_एम है यहां पर अभी या तो यहां पे ए_टी_एम बंद है इधर यहां पर।

और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है इधर साइड पे शायद कोई बैठा है शायद उसका फेस क्लियर दिखाई तो दे नहीं रहा है यहां पर --

सामने एक जिम दिखाई दे रहा है यहां पर एक आदमी है जो--

यहां पर एक इइ आदमी इधर साइड में दिखाई दे रा --

यहां पर दो बाइक दिखाई दे रहे हैं यहां पर दो चेयर --

सामने बहुत बड़े-बड़े ट्रक दिखाई दे रहे हैं यहां पर--

सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जोकि अ सीट अ एक चेयर पर बैठा हुआ--

यहां पर ये टैटू बनवाने के लिए आए हैं एक एक भइया है जो कि --

आआह प् टैटू बना रहे हैं यहां प--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

ये आप इसका कलर वाइट है और पूंछ का कलर थोड़ा पीला पीला दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बहुत सारे डी_जे दिखाई दे रहे हैं।

ओर एक इधर ये औरत बैठी हुई है टेबल और चेयर रखी हुए हैं यहां प--

उधर साइड में भी एक ब्लैक ब्लैक कलर की चेयर दो तीन चेयर रखी हुई है साइड में इधर।

दो बाइक दिखाई दे रही है ये भी पेट्रोल भरवाने के लिए यहां पर आए हैं इधर साइड में एक चैर दिखाई दे रही है इधर यहां पर एक बड़ा सा टैंपू दिखाई दे--

वो योगा कर रहे हैं सर का फेस क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है यहां प --

घास फूस लगी हुई है जिसको मेंटेन करके रखा हुआ है यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रह है यहां पर--